यहां म एक पहाड़ छ वहां में खूब बढ़िया हरियाली छे खूब सारा पेड़ पौधा छ दो-चार घर छ।

वा में लाइट जल री बगल में एक दांत बन रेहो लाइट से वा में बगल की दुकान छे वा में सीमेंट की बोर्ड लाग रिहो।